पीछे की ओर कपड़े बिछाए गए हैं पीछे का बैकग्राउंड ब्लू है।

पीछे की और काफी सारे सामान रखे हुए हैं नीचे का लकड़ी कमरा दोबा टेबल बनी हुई है।

इसके ऊपर सामान रखे हुए है यहां पे काफी सारे ईट बनी हुई है जिसकी कलर व्हाइट एवं येलो है।

बाइक की कलर ब्लैक है यहां पे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनके कपड़े कलर नेक है नीचे की ओर मिट्टी है।

नीचे कर बड़ा बड़ा फॉम का डब्बा भी रखा हुआ है नीचे कर पक्की भी की गई हैं।

यहां पे एक रेलिंग में पोस्टर भी लगाए गए हैं नीचे की ओर तीन चार ट्रैक्टर दिखाई दे रहे है जिनकी कलर रेड एवं ब्लू और ग्रे है।

यहाँ पर लकड़ी की मदद से टेबल बनी हुई है जिसकी कलर ग्रे हैं।

उसके अंदर कुछ सामान रखे हुए जो शीशे की मदद से बनी हुई है।

नीचे की ओर कपड़े बिछाए गए हैं जिसके ऊपर मछली रखे हुए हैं।

एक लकड़ी की मदद से टेबल बनी हुई जिसके ऊपर तीन चार कलर के टब रखे हुए हैं और तीन दो बाल्टी रखे हुए जो पेंट करने वाली है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य बना हुआ है जिसकी कलर व्हाइट एवं रेड है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य बना हुआ है जहां पे नीचे की ओर टाइल्स लगी हुई--

यह एक पार्क का दृश्य बना हुआ है जहां पे काफी सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है जिनके कपड़े के कलर अनेक है इनके हाथ में बलून भी नजर आ रहे है।

लोहे के सीढ़ी नजर आ रही जिसपे काफी सारे व्यक्ति है जो चहड़ते हुए नजर आ रहे है जिनके कपड़े का कलर अनेक हैं।

यह एक फील्ड का दृश्य बना हुआ है जहां पर वाइट कलर से यहां पे डिजाइनिंग दी गई है।

यहां पे काफी सारे बैलून से डेकोरेशन किए गए हैं जिनकी कलर अनेक हैं।

दीवार में व्हाइट कलर के वॉल पुट्टी भी की गई है।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

यहां पे लकड़ी की मदद से टेबल बनी हुई है जिस के ऊपर कपड़े बिछाए गए हैं।

यहां पे एक लोहे के गेट बना हुआ नजर आ रहा है जिसकी कलर ग्रे है।

यह एक तालाब का दृश्य बना हुआ है जो काफी गहरी पानी नजर आ रही जो काफी दूर में दिख रही है।

उसके ऊपर एक कैलकुलेटर भी रखा हुआ है ऊपर इसके ऊपर एक कैलेंडर भी रखी हुई है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य बना हुआ है जहां पे नीचे की ओर टाइल्स लगी हुई है जिसकी कलर व्हाइट एवं ब्लैक है।

एक बड़ा सा पोस्ट भी लगाया गया है साइड में ठेला नजर आ रहा है।

बाहर की ओर एक कार भी लगे हुए हैं जिसकी कलर ग्रे हैं।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

नीचे एक और टाइल्स भी लगे हुए हैं बाहर को एक टेबल भी लगा हुआ है।

नीचे की ओर विंबर साबुन नजर आ रही है सर्फ़ एक्सल भी सरफ नजर आ रहे है।

यहां पर दो व्यक्ति के हाथ में लैंप रखी हुई जो जलते हुए नजर आ रहे हैं।